बहोत ही अच्छा तरीका से बनाया गया हैं और या हर किसान लोगो को जरूरी है पानी खेतो मे डालने के लिए तब जाके--